यहां दिखाई दे रहा है की यहां शादी चल रही हैं वहां बहुत सारे लोग आए हुए हैं मूवी वाले अपने।

जो येलो कलर की बॉउंडिंग की हुई और आस पास से हरे भरे--

एक जेंट्स की पेग पग है जो वो ब्लैक कलर की दिखाई दे रहे हैं और कुछ अपने अपने कामों में बिजी हैं और--

टाइम स्पेंड कर रे हैं और इधर वाटर कूलर लगा हुआ है पानी पीने के लिए--

ने जो कपड़े पहने हुए हैं ब्लू कलर की जींस और व्हाइट कलर की--

शर्ट पहनी हुई है और साथ में इधर वेल कम वगैरा लिखा हुआ हैं।

गेट लगा हुआ है और गेट का कलर जो है ब्लू कलर में--

आसपास हरे पेड़-पौधे भी हैं।

पुल दिखाई दे रहा है जो सीमेंट का है और--

यह एक शॉप है शॉप में अपने लेडीज सूट पड़े हैं कल लेडीज सूट के कलर का --

यह एक छत है छत पे लेंटर डल रहा है और काफी मजदूर काम कर रहे हैं और काफी--

यह एक ब्लू शाइन टोन है इसमें आइन आइलाइनर वेगारह मेकअप वगैरह चीज है।

दोनों चेयर का कलर जो है ब्लैक कलर है और सामने व्हाइट कलर की लाइटिंग वगेरह और सनग्लासेस वगेरह दिये हुए है।

गमले के इस डेकोरेशन की हुई है और नीचे मैट की तरफ जो उसका कलर जो है ब्लैक कलर है।

में गेट का कलर जो व मैरून है।

गेहनें पड़े होते है इधर एक काउंटर है जो मैरून कलर का है एक छोटा सा मैट पड़ा --